जो ब्लैक कलर का है।

लाइट्स लगी हुई है जो ब्लू कलर की है।

इस फोटो में एक दुकान है।

एक बेंच रखा हुआ है।

एक लड़का है जो अपने हाथ में एक खंभे को पकड़े हुए हैं।

इस फोटो में एक टेबल है जो लकड़ी का बना हुआ है।

कार के सामने का भाग--

और एक व्हाइट ब्लू ग्रीन कलर की है।

पंखे लगे हुए हैं।

फोटो लगी हुई हैं।

एक फैन लगा हुआ है।

कुछ लोग किताब खरीदने आए हुए हैं।

जो ब्लू कलर का है।

व्हाइट और ब्लू कलर के गुब्बारे सजे हुए --

मूर्ति सरस्वती मां की है।

गेट है जो कांच की है।

गेट है जो ब्लू कलर का है।

वॉल है जो वाइट कलर की है।